और यहां पे डिब्बे भी बोतलें भी रखी हैं और एक बैग भी बड़ा टंग रहा है।

डाल रख्या है और बच्चे झूल रहे हैं।

यहां सोफे बीच रहे हैं और कुर्सियां भी बीच रही है।

और दो तीन मंजिल का घर दिखाई दे रहा है। बहोत सुंदर घर है।

और खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां पर लाल रंग की दरी बीछी री है।